यहां पे हमलोग सब कोई डांस सिखने आते हैं यहां पे सबको बहोत अच्छा से डांस सिखाते हैं।

ये मोबाइल है बहुत ही अच्छी मोबाइल है इसमें बहुत सारी सुवीधाएँ हो --

खाने के लिए अंडा है यहां पर अंडा रखा हुआ है अंडा बनाता है चाउमीन चाट सब --

यह एक बुक का दुकान है बहुत ही सुन्दर दुकान है यहाँ पे जो अपना मनपसंद का किताब ले सक --

बोहोत बड़ी भैंस है ये भैंस रोड में जा रही --

और ना कोई निकाल सकता है बहुत ही अच्छी जगह है ये |

बाद आप लोग कल तक के लिए इस स्टेशन पर रह सक --

ये हर तरफ घुमाया गया है बहुते सुन्दर से बनाया गया है इसको।

जगह है बहुत ही अच्छा मो --

खरीदता है चाहे वहाँ पर जो जो बुक खरीद सक --